कपड़े की रैक लगी हुई दिख रही हैं साइड मे प्लाऊड रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और फैन दिख रहा मशीने हैं वहां पे बहोत सारी दिख रहें हैं।

कपड़े का डेक एक साइड मे दिख रहा है नीचे में एक काउंटर है जो बनाया है पीछे पर्दा दिख रहा है।

और पंखे लगे हुए वहां दिखाई दे रहे हैं सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगे दिख रहे हैं।